एक ऑफिस है जहाँ देखो कि यह सोफा रखा हुआ है आजू-बाजू सोफे हैं एक बीच में टेबल है जहाँ देखो की एक --

खाने के टेबल ल सजे हुए हैं आजू बाजू लाइटिंग लगे हुए देखो कि बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

देख सकते हो कि एक पार्टी का हॉल है जहां देखो की डेकोरेशन हुआ है पार्टी के सामने--

सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है कुछ लोग है जो आजू बाजू खड़े हुए हैं फोटो खींच रहे हैं।

हमें ई-रिक्शा खड़ी हुई तीन-चार ठो देखो की ई-रिक्शा है आजू-बाजू। कुछ लोग बाइक से जा रहे। हो देखो कि आसमान खुला हुआ है।

न दी है नदी के आजू बाजू तलाव है तालाब के बाजू में देखो कि एक शिप है।

ए_टी_एम में सामने कुछ ए_टी_एम में सामने कुछ महिला खड़ी हुई है जो पानी से कुछ लिए --

देख सकते हो कि एक सोसाइटी है सोसाइटी के आजू बाजू लोग हैं जहां कुछ लोग खरे हुए बात वात कर रे उसके बाजू में एक फ्लैट है जहाँ घर है।

कुर्ती रखी हुई है डब्बे में देखो कपड़े रखे हुए है सामने देखो कि टंगी हुई कुर्तियां ये पैकेटों में रखी हुई है कपड़े--

देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया हेगा जहां ए_टी_एम है। इसकी ए_टी_एम में इत्ती लाइन लगी इत्ती लाइन लगी हुई है लोगों की पैसे निकालने के लिए उसके सामने देखो की एक--